यहाँ एक मकान दिखाई दे रहा है। मकान के अंदर बोरी में आलू प्याज लहसुन --

मुरमुरे अंदर बहुत सी सामग्री रखी गई है।

जिनके हाथ में बाजा शे सम्बंधित सामग्री को लिए हुए हैं |

हाल में ए-टेबल पर एक व्यक्ति कपड़ा प्रेस कर रहा है।

ऊंचा बना हुआ है।